और लाइट भी दिखाई दे रही है दीवार पर बहोत सारे बैनर भी लगे हुए हैं।

यहां पर मैदान दिखाई दे रहा है और हिरन भी दिखाई दे रहे हैं पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

आसमान भी दिखाई दे रहे दे रहा है।

यहां पर बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है।